लड़कियां खड़ी है। कुछ छोटे बच्चे भी हैं और कुछ बड़े-बड़े हैं।

एक आदमी ने जैकेट पहनी हुई है ब्लैक कलर की।

यह तस्वीर सब्जी मंडी की है।

जैसे कि आगे की ओर टेबल लगा हुआ है उसपे लिपस्टिक वगैरह रखी हुई है और एक साइड --

यह तस्वीर एक लग्जरी सैलून का है।

यहां पर बच्चे अपनी बुक्स लाकर स्टडी कर --

पे लोग जुड़े हुए हैं और कुछ लोग इस बस से उतर रहे हैं।

यह तस्वीर में बहुत सारा बालू रखा हुआ है।

कोई ड्रॉइंग कंपटीशन चल रहा है जैसे की --